मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
इस महीने की 21 तारीख को देश को एक गहरे शोक का समाचार मिला
कर्नाटक में टुमकुर जिले के श्री सिद्धगंगा मठ के डॉक्टर श्री श्री श्री शिवकुमार स्वामी जी हमारे बीच नहीं रहे
शिवकुमार स्वामी जी ने अपना सम्पूर्ण जीवन समाजसेवा में समर्पित कर दिया
भगवान बसवेश्वर ने हमें सिखाया है कायकवे कैलास अर्थात् कठिन परिश्रम करते हुए अपना दायित्व निभाते जाना भगवान शिव के निवासस्थान कैलाश धाम में होने के समान है
शिवकुमार स्वामी जी इसी दर्शन के अनुयायी थे और उन्होंने अपने 111 वर्षों के जीवन काल में हज़ारों लोगों के सामाजिक शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के लिए कार्य किया
उनकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में थी जिनकी अंग्रेज़ी संस्कृत और कन्नड़ भाषाओं पर अद्भुत पकड़ थी
वह एक समाज सुधारक थे
उन्होंने अपना पूरा जीवन इस बात में लगा दिया कि लोगों को भोजन आश्रय शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान मिले
किसानों का हर तरह से कल्याण हो ये स्वामी जी के जीवन में प्राथमिकता रहती थी
सिद्धगंगा मठ नियमित रूप से पशु और कृषि मेलों का आयोजन करता था
मुझे कई बार परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है
वर्ष 2007 में श्री श्री श्री शिवकुमार स्वामी जी के शताब्दी वर्ष उत्सव समारोह के अवसर पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ० एपीजे अब्दुल कलाम टुमकुर गए थे
कलाम साहब ने इस मौके पर पूज्य स्वामी जी के लिए एक कविता सुनाई थी
ओ माय फेलो सिटिजेंस इन गिविंग यू रिसीव हैपीनेस
इन बॉडी एंड सौल यू हेव एवरीथिंग टो गिव
आईएफ यू हेव नाउलेज शेयर इत
आईएफ यू हेव रिसोर्स शेयर थेम विथ थे नीडी
यू यूर माइंड एंड हर्ट
टो रिमूव थे पैन ओएफ थे sufferingएंड चीर थे सद हर्ट्स
इन गिविंग यू रिसीव हैपिनेसलमाइटी विल ब्लेस अल्ल यूर एक्शन्स
डॉक्टर कलाम साहब की यह कविता श्री श्री श्री शिवकुमार स्वामी जी के जीवन और सिद्धगंगा मठ के मिशन को सुन्दर ढंग से प्रस्तुत करती है
एक बार फिर मैं ऐसे महापुरुष को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो
26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ और उस दिन हमारा देश गणतंत्र बना और कल ही हमने आनबानशान के साथ गणतंत्र दिवस भी मनाया लेकिन मैं आज कुछ और बात करना चाहता हूँ
हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो हमारे लोकतंत्र का तो अभिन्न अंग है ही और हमारे गणतंत्र से भी पुरानी है मैं भारत के चुनाव आयोग के बारे में बात कर रहा हूँ
25 जनवरी को चुनाव आयोग का स्थापना दिवस था जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल votersडे के रूप में मनाया जाता है
भारत में जिस स्केल पर चुनाव का आयोजन होता है उसे देखकर दुनिया के लोगों को आश्चर्य होता है और हमारा चुनाव आयोग जिस बखूबी से इसका आयोजन करता है इसे देखकर प्रत्येक देशवासी को चुनाव आयोग पर गर्व होना स्वाभाविक है
हमारे देश में यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो एक पंजीकृत मतदाता हैregistered मतदाता है उसे मतदान करने का अवसर मिले
जब हम सुनते हैं कि हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से 15000 फीट की ऊँचाई वाले क्षेत्र में भी मतदान केंद्र स्थापित किया जाता है तो अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में दूरदराज के द्वीपों में भी वोटिंग की व्यवस्था की जाती है
और आपने गुजरात के विषय में तो जरुर सुना होगा कि गिर के जंगल में एक सुदूर क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ जो सिर्फ केवल 1 मतदाता के लिए है
कल्पना कीजिए केवल एक मतदाता के लिए
जब इन बातों को सुनते हैं तो चुनाव आयोग पर गर्व होनाबहुत स्वाभाविक है
उस एक मतदाता का ध्यान रखते हुए उस मतदाता को उसके मताधिकार का उपयोग करने का अवसर मिले इसके लिए चुनाव आयोग के कर्मचारियों की पूरी टीम दूरदराज़ क्षेत्र में जाती है और वोटिंग की व्यवस्था करते हैं और यही तो हमारे लोकतंत्र की ख़ूबसूरती है
मैं हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का निरंतर प्रयास करने के लिए चुनाव आयोग की सराहना करता हूँ
मैं सभी राज्यों के चुनाव आयोग की सभी सुरक्षा कर्मियों अन्य कर्मचारियों की भी सराहना करता हूँ जो मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं और स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करते हैं
इस साल हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होंगे यह पहला अवसर होगा जहाँ 21वीं सदी में जन्मे युवा लोकसभा चुनावों में अपने मत का उपयोग करेंगे
उनके लिए देश की ज़िम्मेदारी अपने कन्धों पर लेने का अवसर आ गया है
अब वो देश में निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार बनने जा रहे हैं
ख़ुद के सपनों को देश के सपनों के साथ जोड़ने का समय आ चुका है
मैं युवापीढ़ी से आग्रह करता हूँ कि अगर वे मतदान करने के लिए पात्र हैं तो ख़ुद को ज़रूर मतदाता के रूप में रजिस्टर करवाएँ
हम में से प्रत्येक को अहसास होना चाहिए कि देश में मतदाता बनना मत के अधिकार को प्राप्त करना वो जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक महत्वपूर्ण पड़ाव है
साथसाथ मतदान करना ये मेरा कर्त्तव्य है ये भाव हमारे भीतर पनपना चाहिये
जीवन में कभी किसी भी कारण से अगर मतदान नहीं कर पाए तो बड़ी पीड़ा होनी चाहिए
कभी कहीं देश में कुछ ग़लत होता हुए देखें तो दुःख होना चाहिए
हाँ मैंने वोट नहीं दिया था उस दिन मैं वोट देने नहीं गया था इसका ही ख़ामियाजा आज मेरा देश भुगत रहा है
हमें इस ज़िम्मेदारी का अहसास होना चाहिए
ये हमारी वृत्ति ये हमारी प्रवृत्ति बननी चाहिये
ये हमारे संस्कार होने चाहिए
मैं देश की जानीमानी हस्तियों से आग्रह करता हूँ कि हम सब मिलकर वोटर रजिस्ट्रेशन हो या फिर मतदान के दिन वोट देना हो इस बारे में अभियान चलाकरके लोगों को जागरूक करें
मुझे उम्मीद है कि भारी संख्या में युवा मतदाता के रूप में पंजीकृत होंगे और अपनी भागीदारी से हमारे लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करेंगे
मेरे प्यारे देशवासियो भारत की इस महान धरती ने कई सारे महापुरुषों को जन्म दिया है और उन महापुरुषों ने मानवता के लिए कुछ अद्भुत अविस्मरणीय कार्य किये हैं
हमारा देश बहुरत्नावसुंधरा है
ऐसे महापुरुषों में से एक थे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
23 जनवरी को पूरे देश ने एक अलग अंदाज में उनकी जन्म जयन्ती मनाई
नेताजी की जन्म जयन्ती पर मुझे भारत की आजादी के संघर्ष में अपना योगदान देने वाले वीरों को समर्पित एक म्यूजियम संग्रहालय का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ
आप जानते हैं कि लाल किले के भीतर आज़ादी से अब तक कई ऐसे कमरे इमारतें बंद पड़ी थी
उन बंद पड़े लाल किले के कमरों को बहुत सुन्दर संग्रहालयों में बदला गया है नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी को समर्पित संग्रहालय यादएजलियां और 1857 आइटीन फिफ्टी सेवेन indiaएस फर्स्ट वार ओएफ इंडिपेंडेंस को समर्पित संग्राहलय और इस पूरे परिसर को क्रान्ति मन्दिर के रूप में देश को समर्पित किया गया है
इन संग्रहालयों की एकएक ईंट में हमारे गौरवशाली इतिहास की खुशबू बसी है
संग्रहालय के चप्पेचप्पे पर हमारे स्वाधीनता संग्राम के वीरों की गाथाओं को बयां करने वाली बातें हमें इतिहास के भीतर जाने के लिए प्रेरित करती हैं
इसी स्थान पर भारत माँ के वीर बेटों कर्नल प्रेम सहगल कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो और मेजर जनरल शाहनवाज़ खां पर अंग्रेज हुकूमत ने मुकदमा चलाया था
जब मैं लाल किले में क्रान्ति मंदिर में वहाँ नेताजी से जुड़ी यादों के दर्शन कर रहा था तब मुझे नेताजी के परिवार के सदस्यों ने एक बहुत ही ख़ास कैप टोपी भेंट की
कभी नेताजी उसी टोपी को पहना करते थे
मैंने संग्रहालय में ही उस टोपी को रखवा दिया जिससे वहाँ आने वाले लोग भी उस टोपी को देखें और उससे देशभक्ति की प्रेरणा लें
दरअसल अपने नायकों के शौर्य और देशभक्ति को नई पीढ़ी तक बार बार अलग अलग रूप से निरंतर पहुँचाने की आवश्यकता होती है
अभी महीने भर पहले ही 30 दिसंबर को मैं अंडमान और निकोबार द्वीप गया था
एक कार्यक्रम में ठीक उसी स्थान पर तिरंगा फहराया गया जहां नेताजी सुभाष बोस ने 75 साल पहले तिरंगा फहराया था
इसी तरह से अक्टूबर 2018 में लाल किले पर जब तिरंगा फहराया गया तो सबको आश्चर्य हुआ क्योंकि वहाँ तो 15 अगस्त को ही यह परम्परा है
यह अवसर था आजाद हिन्द सरकार के गठन के 75 वर्ष पूरे होने का
सुभाष बाबू को हमेशा एक वीर सैनिक और कुशल संगठनकर्ता के रूप में याद किया जाएगा
एक ऐसा वीर सैनिक जिसने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई
दिल्ली चलोतुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आज़ादी दूंगा जैसे ओजस्वी नारों से नेताजी ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई
कई वर्षों तक यह मांग रही कि नेता जी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक किया जाए और मुझे इस बात की खुशी है यह काम हम लोग कर पाए
मुझे वो दिन याद है जब नेताजी का सारा परिवार प्रधानमंत्री निवास आया था
हमने मिलकर नेताजी से जुड़ी बहुत सारी बातें की और नेताजी सुभाष बोस को श्रद्दांजलि अर्पित की
मुझे ख़ुशी है कि भारत के महान नायकों से जुड़े कई स्थानों को दिल्ली में विकसित करने का प्रयास हुआ है
चाहे वो बाबा साहेब आंबेडकर से जुड़ा 26 अलीपुर रोड हो या फिर सरदार पटेल संग्रहालय हो या वो क्रांति मंदिर हो
अगर आप दिल्ली आएँ तो इन स्थानों को ज़रूर देखने जाए
मेरे प्यारे देशवासियो आज जब हम नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में चर्चा कर रहे हैं और वो भी मन की बातमेंतो मैं आपके साथ नेताजी की जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा साझा करना चाहता हूँ
मैंने हमेशा से रेडियो को लोगों के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना है उसी तरह नेताजी का भी रेडियो के साथ काफी गहरा नाता था और उन्होंने भी देशवासियों से संवाद करने के लिए रेडियो को चुना था
1942 में सुभाष बाबू ने आजाद हिन्द रेडियो की शुरुआत की थी और रेडियो के माध्यम से वो आजाद हिन्द फौज के सैनिकों से और देश के लोगों से सवांद किया करते थे
सुभाषबाबू का रेडियो पर बातचीत शुरू करने का एक अलग ही अंदाज़ था
वो बातचीत शुरू करते हुए सबसे पहले कहतेथे थिस इस सुभाष चंद्रा बोसे स्पीकिंग टो यू ओवर थे अज़ाद हिंद रेडियो और इतना सुनते ही श्रोताओं में मानो एक नए जोश एक नई ऊर्जा का संचार हो उठता
मुझे बताया गया कि ये रेडियो स्टेशन साप्ताहिक समाचार बुलेटिन भी प्रसारित करता था जो अंग्रेज़ी हिंदी तमिल बांग्ला मराठी पंजाबी पश्तो और उर्दू आदि भाषाओं में होते थे
इस रेडियो स्टेशन के संचालन में गुजरात के रहने वाले एमआर व्यास जी ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई
आजाद हिन्द रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम सामान्य जन के बीच काफी लोकप्रिय थे और उनके कार्यक्रमों से हमारे स्वाधीनता संग्राम के योद्धाओं को भी बहुत ताकत मिली
इसी क्रांति मंदिर में एक दृश्यकला संग्रहालय भी बनाया गया है
भारतीय कला और संस्कृति बहुत ही आकर्षक तरीक़े से बताने का प्रयास यह हुआ है
संग्रहालय में 4 ऐतिहासिक एक्सिबिशंस हैं और वहाँ तीन सदियों पुरानी 450 से अधिक पेंटिंग्स और आर्ट वर्क्स मौजूद हैं
संग्रहालय में अमृता शेरगिल राजा रवि वर्मा अवनींद्र नाथ टैगोर गगनेंद्र नाथ टैगोर नंदलाल बोस जामिनी राय सैलोज़ मुखर्जी जैसे महान कलाकारों के उत्कृष्ट कार्यों का बखूबी प्रदर्शन किया गया है
और मैं आप सबसे विशेष रूप से आग्रह करूँगा कि आप वहां जाएँ और गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर जी के कार्यों को अवश्य देखें
अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ बात कला की हो रही है और मैं आपसे गुरुदेव टैगोर के उत्कृष्ट कार्यों को देखने की बात कर रहा हूँ
आपने अभी तक गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर को एक लेखक और एक संगीतकार के रूप में जाना होगा
लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि गुरुदेव एक चित्रकार भी थे
उन्होंने कई विषयों पर पेंटिंग्स बनाई हैं
उन्होंने पशु पक्षियों के भी चित्र बनाए हैं उन्होंने कई सारे सुंदर परिदृश्यों के भी चित्र बनाए हैं और इतना ही नहीं उन्होंने ह्यूमन कैरेक्टर्स को भी कला के माध्यम से कैनवास पर उकेरने का काम किया है
और खास बात ये है कि गुरुदेव टैगोर ने अपने अधिकांश कार्यों को कोई नाम ही नहीं दिया
उनका मानना था कि उनकी पेंटिंग देखने वाला खुद ही उस पेंटिंग को समझे पेंटिंग में उनके द्वारा दिए गए संदेश को अपने नजरिए से जाने
उनकी पेंटिंग्स को यूरोपीय देशों में रूस में और अमेरिका में भी प्रदर्शित किया गया है
मुझे उम्मीद है कि आप क्रांति मंदिर में उनकी पेंटिंग्स को जरुर देखने जाएंगे
मेरे प्यारे देशवासियोंभारत संतों की भूमि है
हमारे संतों ने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से सद्भाव समानता और सामाजिक सशक्तिकरण का सन्देश दिया है
ऐसे ही एक संत थे संत रविदास
19 फरवरी को रविदास जयंती है
संत रविदास जी के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं
संत रविदास जी कुछ ही पंक्तियों के माध्यम से बड़ा से बड़ा सन्देश देते थे
उन्होंने कहा था
जातिजाति में जाति है
जो केतन के पात
रैदास मनुष ना जुड़ सके
जब तक जाति न जात
जिस प्रकार केले के तने को छिला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता फिर पत्ते के नीचे पत्ता और अंत में कुछ नही निकलता है लेकिन पूरा पेड़ खत्म हो जाता है ठीक उसी प्रकार इंसान को भी जातियों में बाँट दिया गया है और इंसान रहा ही नहीं है
वे कहा करते थे कि अगर वास्तव में भगवान हर इंसान में होते हैं तो उन्हें जाति पंथ और अन्य सामाजिक आधारों पर बांटना उचित नहीं है
गुरु रविदास जी का जन्म वाराणसी की पवित्र भूमि पर हुआ था
संत रविदास जी ने अपने संदेशों के माध्यम से अपने पूरे जीवनकाल में श्रम और श्रमिक की अहमियत को समझाने का प्रयास किया
ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उन्होंने दुनिया को श्रम की प्रतिष्ठा का वास्तविक अर्थ समझाया है
वो कहते थे
मन चंगा तो कठौती में गंगा
अर्थात यदि आपका मन और ह्रदय पवित्र है तो साक्षात् ईश्वर आपके ह्रदय में निवास करते हैं
संत रविदास जी के संदेशों ने हर तबके हर वर्ग के लोगों को प्रभावित किया है
चाहे चित्तौड़ के महाराजा और रानी हों या फिर मीराबाई हों सभी उनके अनुयायी थे
मैं एक बार फिर संत रविदास जी को नमन करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियोकिरण सिदर ने माइगोव पर लिखा है कि मैं भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और उसके भविष्य से जुड़े पहलुओं पर प्रकाश डालूं
वो मुझसे ये भी चाहते हैं कि मैं विद्यार्थियों से अंतरिक्ष कार्यक्रमों में रूचि लेने और कुछ अलग हटकर आसमान से भी आगे जाकर सोचने का आग्रह करूँ किरण जी मैं आपके इस विचार और विशेष रूप से हमारे बच्चों के लिए दिए गए संदेश की सराहना करता हूँ
कुछ दिन पहले मैं अहमदाबाद में था जहाँ मुझे डॉक्टर विक्रम साराभाई की प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मिला
डॉक्टर विक्रम साराभाई का भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है
हमारे स्पेस प्रोग्राम में देश के असंख्य युवा वैज्ञानिकों का योगदान है
हम इस बात का गर्व करते हैं कि आज हमारे स्टूडेंट्स द्वारा डेवलप किए गए सैटेलाइट्स और साउंडिंग रॉकेट्स अंतरिक्ष तक पहुँच रहे हैं
इसी 24 जनवरी को हमारे विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया कलाम सेटलॉन्च किया गया है
ओडिशा में यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए साउंडिंग रॉकेट्स ने भी कई कीर्तिमान बनाए हैं
देश आज़ाद होने से लेकर 2014 तक जितने स्पेस मिशन हुए हैं लगभग उतने ही स्पेस मिशन की शुरुआत बीते चार वर्षों में हुई हैं
हमने एक ही अंतरिक्ष यान से एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है
हम जल्द ही Chandrayaan2 अभियान के माध्यम से चाँद पर भारत की मौजूदगी दर्ज कराने वाले हैं
हमारा देश स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग जानमाल की रक्षा में भी बख़ूबी कर रहा है
चाहे साइक्लोन हो या फिर रेल और सड़क सुरक्षा इन सब में स्पेस टेक्नोलॉजी से काफी सहायता मिल रही है
हमारे मछुआरे भाइयों के बीच नेविकडिवाइस बांटे गए हैंजो उनकी सुरक्षा के साथसाथ आर्थिक तरक्कीमें भी सहायक है
हम स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सरकारी सेवाओं की डिलिवरी और अकाउंटेबिलिटी को और बेहतर करने के लिए कर रहे हैं
हाउसिंग फोर अल्ल यानि सबके लिए घर इस योजना में 23 राज्यों के करीब 40 लाख घरों को जिओटैग किया गया है
इसके साथ ही मनरेगा के तहत करीब साढ़े तीन करोड़ संपत्तियों को भी जिओटैग किया गया
हमारे सैटेलाइट्स आज देश की बढ़ती शक्ति का प्रतीक हैं
दुनिया के कई देशों के साथ हमारे बेहतर संबंध में इसका बड़ा योगदान है
साउथ एशिया सैटेलाइटस तो एक अनूठी पहल रही है जिसने हमारे पड़ोसी मित्र राष्ट्रों को भी विकास का उपहार दिया है
अपनी बेहद कॉम्पिटिटिव लॉन्च सर्विसेज के माध्यम से भारत आज न केवल विकासशील देशों के बल्कि विकसित देशों के सैटेलाइटस को भी लॉन्च करता है
बच्चों के लिए आसमान और सितारे हमेशा बड़े आकर्षक होते हैं
हमारा स्पेस प्रोग्राम बच्चों को बड़ा सोचने और उन सीमाओं से आगे बढ़ने का अवसर देता है जो अब तक असंभव माने जाते थे
यह हमारे बच्चों के लिए सितारों को निहारते रहने के साथसाथ नएनए सितारों की खोज करने की ओर प्रेरित करने का विजन है
मेरे प्यारे देशवासियोंमै हमेशा कहता हूँ जो खेले वो खिले और इस बार के खेलो इंडिया मेंढ़ेर सारे तरुण और युवाखिलाड़ी खिल के सामने आए हैं
जनवरी महीने में पुणे में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 18 गेम्स में करीब 6000 खिलाड़ियों ने भाग लिया
जब हमारा स्पोर्ट्स का लोकल इकोसिस्टम मजबूत होगा यानी जब हमारा बसे मजबूत होगा तब ही हमारे युवा देश और दुनिया भर में अपनी क्षमता का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर पाएंगे
जब लोकल लेवेल पर खिलाड़ी बेस्ट प्रदर्शन करेगा तब ही वो ग्लोबल लेवेल पर भी बेस्ट प्रदर्शन करेगा
इस बार खेलो इंडिया में हर राज्य के खिलाड़ियों ने अपनेअपने स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है
मेडल जीतने वाले कई खिलाड़ियों का जीवन ज़बर्दस्त प्रेरणा देने वाला है
मुक्केबाज़ी में युवा खिलाड़ी आकाश गोरखा ने सिल्वर मेडल जीता
मैं पढ़ रहा था आकाश के पिता रमेश जी पुणे में एक कॉम्प्लेक्स में बतौर वॉचमैन का काम करते हैं
वे अपने परिवार के साथ एक पार्किंग शेड में रहतेहैं
वहीं महाराष्ट्र की अंडर21 महिला कबड्डी टीम की कप्तान सोनाली हेलवी सतारा की रहने वाली है
उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया और उनके भाई और उनकी माँ ने सोनाली के हुनर को बढ़ावा दिया
अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कबड्डी जैसे खेलों में बेटियों को इतना बढ़ावा नहीं मिलता है
इसके बावजूद सोनाली ने कबड्डी को चुना और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया
आसनसोल के 10 साल के अभिनवशॉखेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता हैं
कर्नाटक से एक किसान की बेटी अक्षता बासवानी कमती ने वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता
उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपने पिता को दिया
उनके पिता बेलगाम में एक किसान हैं
जब हम इंडिया के निर्माण की बात कर रहे हैं तो वो युवा शक्ति के संकल्प का ही तो न्यू इंडिया है
खेलो इंडिया की ये कहानियाँ बता रही है कि न्यू इंडिया के निर्माण में सिर्फ बड़े शहरों के लोगों का योगदान नहीं है बल्कि छोटे शहरों गाँव कस्बों से आने वाले युवाओंबच्चों यंग स्पोर्टिंग talentsउनका भी बहुत बड़ा योगदान है
मेरे प्यारे देशवासियोंआपने कई सारे प्रतिष्ठित ब्यूटी कंटेस्ट के बारे में सुना होगा
पर क्या आपने टॉयलेट चमकाने के कॉन्टेस्ट के बारे में सुना है अरे पिछले लगभग एक महीने से चल रहे इस अनोखे कॉन्टेस्ट में 50 लाख से अधिक शौचालयों ने हिस्सा ले भी लिया है
इस अनोखे कंटेस्ट का नाम है स्वच्छ सुन्दर शौचालय
लोग अपने शौचालय को स्वच्छ रखने के साथसाथ उसे रंगरौगन करके कुछ पेंटिंग्स बना कर सुन्दर भी बना रहे है
आपको कश्मीर से कन्याकुमारी कच्छ से कामरूप तक की स्वच्छ सुन्दर शौचालय की ढ़ेर सारी फोटोस सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल जायेंगी
मैं सभी सरपंचों और ग्राम प्रधानों से अपनी पंचायत में इस अभियान का नेतृत्व करने का आवाहन करता हूं
अपने स्वच्छ सुन्दर शौचालय की फ़ोटो को माइलजातघर के साथ सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें
साथियों 2 अक्टूबर 2014 को हमने अपने देश को स्वच्छ बनाने और खुले में शौच से मुक्त करने के लिए एक साथ मिलकर एक चिरस्मरणीय यात्रा शुरू की थी
भारत के जनजन के सहयोग से आज भारत 2 अक्टूबर 2019 से काफी पहले ही खुले में शौच मुक्त होने की ओर अग्रसर है जिससे कि बापू को उनकी 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलिदी जा सके
स्वच्छ भारत के इस चिरस्मरणीय यात्रा में मन की बात के श्रोताओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसीलिए तो आप सबसे यह बात साझा करते हुए खुशी हो रही है कि पाँच लाख पचास हज़ार से अधिक गांवों ने और 600 जिलों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया है और ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज 98 को पार कर गया है और क़रीब नौ करोड़ परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है
मेरे नन्हेमुन्ने साथियो परीक्षाओं के दिन आने वाले हैं
हिमाचल प्रदेश के निवासी अंशुल शर्मा ने माइगोव पर लिखा है कि मुझे परीक्षाओं और एक्साम वॉरियर्स के बारे में बात करनी चाहिए
अंशुल जी यह मुद्दा उठाने के लिए आपको धन्यवाद
हां कई परिवारों के लिए साल का पहला हिस्सा एक्साम सीजन होता है
विद्यार्थी उनके मातापिता से लेकर शिक्षिक तक सारे लोग परीक्षाओं से सम्बंधित कार्यों में व्यस्त रहते हैं
मैं सभी विद्यार्थियों उनके मातापिता और शिक्षकों को शुभकामनाएं देता हूँ
मैं इस विषय पर आज मन की बात के इस कार्यक्रम में चर्चा करनाज़रूर पसंद करता लेकिन आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं दो दिन बाद ही 29 जनवरी को सवेरे 11 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश भर के विद्यार्थियों के साथ बातचीत करने वाला हूँ
इस बार स्टूडेंट्स के साथसाथ पेरेंट्स और टीचर्स भी इस कार्यक्रम क हिस्सा बनने वाले हैं
और इस बार कई अन्य देशों के स्टूडेंट्स भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे
इस परीक्षा पे चर्चा में परीक्षाओं से जुड़े सभी पहलुओं विशेष रूप से स्ट्रेस फ्री एक्साम यानी तनावरहित परीक्षा के संबंध में अपने नौजवान मित्रों के साथ बहुत सारी बातें करूंगा
मैंने इसके लिए लोगों से इनपुट और आईडीईए भेजे ने का आग्रह किया था और मुझे बहुत खुशी है कि माइगोव पर बड़ी संख्या में लोग अपने विचार साझा कर रहे हैं
इनमें से कुछ विचारों और सुझावों को मैं निश्चित तौर पर टाउन हॉल प्रोग्राम के दौरान आपके सामने रखूंगा
आप जरुर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंसोशल मीडिया और नमो ऐप के माध्यम से आप इसका लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं
मेरे प्यारे देशवासियो
30 जनवरी पूज्य बापू की पुण्यतिथि है
11 बजे पूरा देश शहीदों को श्रद्धांजलि देता है
हम भी जहाँ हों दो मिनट शहीदों को जरुर श्रद्धांजलि दें
पूज्य बापू का पुण्य स्मरण करें और पूज्य बापू के सपनों को साकार करना नये भारत का निर्माण करना नागरिक के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना इस संकल्प के साथ आओहम आगे बढें
2019 की इस यात्रा को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएँ
मेरी आप सबको बहुतबहुत शुभकामनाएँ बहुतबहुत धन्यवाद